दिखाई दे रही है एक घूमावदार स्लाइड भी दिखाई दे रही है।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

इस चित्र में हमें खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर एक काले कलर की टंकी रखी गई है साइड में

यहां किसी चीज का गेम चल रहा है।

कार आगे दरवाजे पे एक औरत बैठी हुई है।

और उसका सामान भी दिखाई दे रहा है एक अलमारी जैसा कुछ रखा हुआ है।

पोस्टर लगा हुआ है जिस में अरिहंत भोजनालय लिखा हुआ है।

ए वर्कर के हाथ में बाल सुखाने वाली मशीन दिखाई दे रही है।

पेट्रोल पंप के पास दो कर्मचारी खड़े हुए हैं।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी एसियां दिखाई दे रही है।

दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

पोस्टर में मां आर्शीवाद पैथोलॉजी लैब एवं मेडिकल स्टोर लिखा हुआ हैं।

दुकान का कलर पीले रंग का किया गया है।

चौराहा पे बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

बांध के सामने दूर की तरफ एक दीवार बनी हुई है।

इसमें बहोत सारे पाइप रखे हुए है।

पहाड़ पे कुछ लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां अलग अलग प्रकार की बंदूके रखी हुई हैं।

मुझे इस चित्र में गोदाम नजर आ रहा है गोदाम में प्याज की बहुत सारी बोरियां रखी हुई हैं।

गार्डेन के दोनों साइड रोप जाती हुई दिखाई दे रही है।

स्कूल में कुछ बच्चे आते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ व्यक्ति आते जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मंदिर के पीछे।

सूरज की किरने पानी में जाती हुई दिखाई दे रहा है।